देखिये ये बस असटैंड है कही का नही देखिये रिक्शा है रिक्शा में दो चक्का लगा हुआ है और सवारी भी बैठा हुआ है।

बहुत ही अच्छा गुफा देखने को मिलता है उस साइड देखिए एक आदमी ख- बाहर में जा रहा है। बूढ़ा है उस साइड देखिए कुत्ता जा रहा है उस साइड देखिए एक बहुत ही सफेद कपड़ा में आदमी खड़ा है- आ रहा

उसमें लगता है बहोत सारे जंग-- जंगली जानवर और होंगे उस साइड देखिये उसका उम्म- डबल दिखाने को मिलता--

और देखिए फूल कितना चढ़ाया गया है और देखिए लगता है तीन मूर्तियां है लेकिन बहुत ही सारे ऊपर देखिए --

ये देखिए यहाँ पर दु दुकान कपड़ा का है और देखिए इ साइड देखिए कैसे प्रेस हीट करने वाला है और यहां पर देखिये --